यहां पे बहुत दर्ज कर दे रहा है बहुत शानदार फोटो यहां पे बहुत सा है--

एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का फोटो मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे लोग आकर भी हो सकता है--

किताब दिखाई दे रही है बहुत यहाँ भी अलमारी रखी हुई है अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई है कुर्सी भी है यहां पे टेबल भी रखी है यहां पर पंखा भी लग--

स्विमिंग पूल का पानी एकदम बिल्कुल नीला पानी दिख रहा है जो कि बहुत साफ नजर आ रहा है मुझको स्विमिंग पूल का पानी बहुत बढ़िया--

मुझे एक बहुत दे रहा है इस पे लिखा हुआ है अ फोटो में मुझे लिख रहा है परम परमाणु लिख रहा है फोटो में मुझे--

और बहोत ही बढ़िया फोटो यहा पे लगा हुआ है और बहोत नंबर एक का माल है यह

ये बहोत ही शानदायक मुझे किसी बहोत बड़े मॉल का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पे मॉल में यहां पे वॉशिंग मशीन भी रखी है।

सामने भगवान जी का मंदिर जो कि बहुत बड़ा बनाया उन्होंने यहां पे बहुत सारे लोग यहां पर लेडीज भी है बच्चे भी है सब लोग भगवान के मंदिर के --

पूजा करने के लिए आए यहां पे एक यहां पे छोटा सा मुझे पेट भी दिखाई दे रहा है बहुत शानदार दिख रहा है।

वहां बिजली पे यहां पे बहोत सारा कुछ यहां पे वो भी लगा हुआ है जिसको हरे हरे पेड़ है यहां पे--

बहुत शानदार फोटो के सामने मुझे पार्क दिखाई दे रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है फोटो देखने में--

बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं मुझको एक यहां पे लड़का खड़ा हुआ है जिसने अपने पीछे पीठ पीछे बैग भी लटकाया हुआ है बहुत शानदार फोटो यहां --

और इन सभी लड़कों ने जूते जुरा पहन रखी और बेचारे फुटबॉल खेल रहे हैं और यहां पे नेट भी लगवाए ताकि बॉल बाहर ना जाए इस मैदान से बहुत बढ़िया खेलने बेचारे लड़के मजा--